यह अंदर में एक गुफा हैं जो कि पहाड़ के अंदर बनी हुई हैं जो रास्ता पहाड़ का अंदर की तरफ आ रहा था उसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।